मुझे एक दुकान दिख रही है दुकान में मुझे का--

घर के ऊपर एक पोस्टर लगा भी दिख रहा है।

छत पे बहोत सारे लैंप भी दिख रहे है एक मुझे बोर्ड भी दिख रहा है।

टेबल भी दिख रही है। कुर्सियां भी दिख रही है और कुछ--

अलमारी के ऊपर कुछ मुझे ढोल भी दिख रहे हैं।

स्टैंड भी दिख रहा है और एक येलो कलर की थैली भी दिख रही है।

और कुछ उसमें स्वीट भी दिख रही है और मुझे कुछ बॉक्स भी दिख रहे हैं।

मुझे एक पुराना महल दिख रहा है और कुछ लोग भी दिख रहे हैं।

मुझे एक स्टेज बना दिख रहा है उस--

और कुछ कुर्सियां भी दिख रही हैं और कुछ रंग बिरंगे लाइट भी दिख रही--

मुझे एक शॉप दिख रही है।

मुझे एक मंदिर दिख रहा है मंदिर में लैंप --

जंगल में पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं मुझे कुछ लोग भी दिख रहे हैं।